ऊपर स्टार बना हुआ है और उसके बीच में एक अ स्टैचू लगा हुआ है जो एक --

ये जो ये दॄश्य है ये गीता होलसेल मार्ट का दॄश्य दिखाई दे रहा है।

लेकिन इसके ऊपर-नीचे चारो तरफ बहोत ही बेहतरीन लाइट वगैरह लगी हुई है। एलईडी वगैरह --

यहाँ पे कॉपी किताब पैन्सिल पेन पेन्सिल रबर मुहर वगैरे सारी चिजे उपलब्ध हैं।

क्या ये किसी मशीनरी शोफ़ है। यहाँ मशीनों के सामान वगेरा मिल --

जमाने मे जैसे मकान बनते थे वैसा ही इसमें कुछ गुम्बद टाइप का दिख रहा है।

अपने गॉड को याद करते हैं। उनसे प्रे करते हैं। अपनी अंदर की चीजों को गॉड से बताते हैं और अपना जो भी कहना होता है यहाँ आके कहते हैं। ये क्रिस्चियनों का मंदिर कहा जाता है चर्च ।